एक आदमी पीछे से आ रहा है फॉर व्हीलर भी पीछे खड़ी हुई हैएक आदमी झुका हुआ है और रॉड दिखाई दे रही है और पीछे फॉर व्हीलर खड़ी हुई है।

उसके प उसके पास में ग्रिल लगी हुई है उसके बगल में रेड कलर की सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों के बगल में एक नारियल का पेड़ है नारियल के पेड़ में एक घर है कला कलर सा गेट लगा है ।

एक सफ़ेद और येलो कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है है उसके ऊपर टूरिस्ट और फ़ोर्स लिखा हुआ है अगल बगल भी फोर व्हीलर दिखाई दे रही है।

ये एक बैंक दिखाई दे रहा जिसमें एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है इसमें कत्थई कलर और वाइट कलर का और पीले कलर का पेंट हुआ है।

ये एक चोल नज़र आ रही है बोर्ड नजर आ रहा है।